इसमें एक कांच के ग्लास के अंदर आइस क्रीम रखी है निचे चाय के कप में चाय रखी है ।

बिच में एक हवन कुंड बना है।

वीर में एक डामर की लम्बी सी रोड दिख रही है बगल में एक नीला रंग का बड़ा सा तीन सेट का मकान दिख रहा है बिजली का एक खम्बा उससे लगा हुआ है ।

इसमें एक पिले रंग की लम्बी सी बिल्डिंग का छज्जा दिख रहा है।

ताजा बुक डिपो स्टॉल ऐसा इंग्लिश में सफ़ेद अछरो से लिखा है ।